सभी बच्चों ने क टी-शर्ट और पेंट पहना है और सभी बच्चे अपने दोनों पैरों को दोनों हाथ से पीछे होकर पकड़ रहे---

ओर कुछ गड़िया भी लगी है ओर कुछ वृक्ष भी हरे-भरे दिखाई दे रहै है।

और उन्होंने हूडी टाइप टी-शर्ट और पेंट पेहना है और एक पेंट का ऊपर है थोड़ा--